फंक्शनस के लिए होटल को बुक करते है यह होटल में बहुत अच्छे सुविधा दी गयी है होटल में बहुत सारे लोग आते है रहते है।

यहाँ पे ईंटे के बनी घर है यह घर बहुत पुरानी है यह घर में ईंटे की बनी सीढ़ी है।

यह एक स्टेडियम है यह स्टेडियम बहोत बड़ी है यह स्टेडियम बहोत सारे लड़के क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम में आये हुए हैं यहाँ पे सभी लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं ।

बैठे हुए हैं नमाज़ पढ़ रहे है यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम धर्म के लोगों की भीड़ लगी हुई हैं।

यह बाबू कैलाश प्रसाद कॉलेज ऑफ़ --

फार्मेसी है। से-सवरेजी सवरेजी खरक देलवा बजार जिला देवरिया के है। यह कॉलेज में बोहोत सारे लड़की लड़के यहाँ पे पढाई करने के लिए कॉलेज में आत--

बहुत सारे आदमी यहाँ पे पूजा करने के लिए इस मंदिर आए हुए हैं काफी सारा चढ़ावा चढ़ा रहे हैं।